जिसके छत के ऊपर हम हैं कलर ब्लैक दिख रहा है कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

मिट्टी का कलर हल्का ब्राउन दिख रहा है।

पीछे टाइले दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की।

छत पे ही यहां पर बोर्ड लगा हुआ है।

पीछे जंगल एरिया दिखाई दे रहा है।

सामने ही रोड है ब्लैक कलर --

जिन्होंने कि अह व्हाइट कलर की टोपी पहनी है।

सामने एक व्यक्ति ने हाथ में खोली पकड़ी है।

ब्लू कलर के एक छोटे से घर में दरवाजे दिख रहे--

साथ में बिल्डिंग बनी हुई है।

और साथ ही तालाब पानी का वाइट कलर का है।

पीछे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे है बड़े बड़े पहाड़ है।

एक व्यक्ती ब्लू जींस और व्हाइट शर्ट में है।

छत पर भी हमें दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का--